इसमें हमें एक बहुत ही सुंदर झरने का दृश्य दिखाया हुआ है जिसमें झरने से नीचे की तरफ पानी बह रहा है।

इसमें हमें एक शादी का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें दूल्हा और दुल्हन एक साथ व्हाइट कलर के कपड़ों में पहने हुए हैं।

इसमें हमें मिस्त्री का काम दिखाया गया है जिसमें मिस्त्री और मजदूर मिलकर छत ढाल रहे हैं छत के ऊपर आर_सी_सी लेंटर डाल रहे हैं।

कुछ लोग समान ला रहे हैं और सामने की तरफ हड़े भरे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

तथा सामने की तरफ एक पानी का स्त्रोत्र भी दिखाई दे रहा है जोड़ की तरह लग रहा है।

जिसमें चार अलग अलग लेडिस खड़ी बैठी हुई हैं अलग अलग मुद्रा में।

तथा उसके पीछे मीटर तथा अलग अलग तरीके की पाइप्स लगी हुई हैं इस मशीन का रंग ब्लैक तथा ब्राउनिश है।

तथा उनके ऊपर मूर्तियां बनाई हुई है जिसमें से तीन एक साथ खड़ी है तथा एक तरफ खड़ी--

और राइट साइड दीवार के ऊपर देवी देवियों की फोटोज लगी हुई है।

इसमें हमें एक शादी का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें सामने की तरफ दूल्हा और दुल्हन एक साथ खड़े हुए हैं।

उनके पीछे पीले रंग की थीम में डेकोरेशन की गई है और फूल भी लगे हुए हैं।

इसमें हमें एक जंगली खेत का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें आस पास बहोत सारी फसल लगा रखी है जिसमें फव्वारे के साथ सिंचाई हो रही है।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

खंडर बना हुआ है तथा पुरानी टाइम का कला कृतियां की हुई हैं।

तथा एक रेडी के ऊपर एक बड़ी सारी मछली को मार कर रखा हुआ है जिसकी एक व्यक्ति पिक्चर भी खींच रहा है।

दुकान के अंदर अलग अलग तरीके की किताबें रखी हुई है और टेबल के ऊपर एक हेलमेट भी रखा हुआ है।

इसमें हमें एक माता का मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमें सामने की तरफ गुलाबी रंग का मंदिर है।

इसमें हमे एक कपड़ों की दुकान दिखाई गई है जिसका नाम शालीमार कलेक्शन है।

इसे हमें किसी बिल्डिंग का दृश्य दिखाया गया है उसमें बालकनी दिखाई दे रही है जिसके बाहर की तरफ जाली लगी हुई है।

इसमें हमें एक कपड़ों की दुकान दिखाई गई है जिसमें सामने की तरफ एक मूर्ति के ऊपर पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई है।

और एक सामने कार भी खड़ी हुई है जो की कवर के साथ ढकी हुई है।

इसमें हमें एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर का दृश्य दिखाया गया है।